और इसकी वाल्स जो है व्हाइट कलर की है।

में छे लोग बैठे हुए हैं।

एक निचे छोटी बोट है जो सफेद कलर की है |

हमें इस इमेज में एक अं बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

हमें इस इमेज में एक युवती दिखाई दे रही है।

जिसने हल्के हरे रंग की शर्ट हाफ आस्तीन की --

दो स्टूल जो हैं ब्लैक कलर के वो दिखाई दे रहें।

एक स्पीकर है जो ब्लैक कलर का है।

ने नील रंग का शर्ट और ग्रे कलर का जींस पहन रखा है |